जिसमे दो-तीन दो-तीन तरफ से रस्ते दिए है।

यहाँ बहोत दूर पे एक बहोत बड़ा सा पहाड़ है।

ये एक डैम जैसा दिख रहा है।

ग्रीन कलर के पेड़ ग्रीन कलर की घाँस--

मंदिर का कलर ऑरेंज कलर का दिख रहा है।

जो काली कलर की जीन्स पहना--

समान में अंकल एक अ ब्राउन कलर का झोला पकडे खड़े हुएं हैं।

डोर के पास और मशीने भी दिख रही है।

यहाँ एक बस स्टैंड दिख रहा है।

यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है।

एक कार आगे से खुली हुई दिख रही है।

वेलकम टू टूरिस्ट कैपिटल ऑफ़ --

जीम में जीम का सामान मशीने दिख रही है।

मूर्तियों में हाथ बंधे --